तेगी हमें यहाँ टाइल वाली जमीन देखने को मिल रही हैं उसके ठीक ब आगे कि तरफ हम कुछ पौधों को उगा हुआ देख प रहे हैं और वहाँ पे एक बॉउन्डरी सी बनी हुई हैं और सामने हमें कुछ झूले नज़र आ रहे हैं जो कि पानी वाले झूले होते हैं।

सामने वाला टायर भी हम देख पा रहे है काफी मोटा सा हैऔर हम उसका हैंडल को देख पा रहे है पीछे आस-पास हम देख पा रहे है कि काफी एक न्यूज़पेपर सा और कुछ पेड़ पास--

देख सकते हैं बहोत ही प्यारा और सुंदर सा व्हाइट कलर का एक केक देखने को मिल रहा हैं जिसमे नीचे की तरफ कुछ झालर जैसा देखन को मिल रहा हैं।

कि हम बात करे तो यहाँ पर हम देख सकते है कि यहाँ पे हमें कुछ महल जैसा कुछ बना हुआ देखने को मिल रा जोकि नीचे की तरफ अ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे है कि अ नीचे की तरफ काफी सारे वाइट कलर के हमें पिलर्स दिखने को मिल रहे --

और हम देख पा रहे हैं सामने कि तरफ हमें व्हाइट कलर के कुछ पिलर नजर आ रहे हैं उसके ऊपर अ ब्लू कलर का पैंट भी किया हुआ है हमें कुछ छत भी देखने को मिलरही --

बाट करें तो यहाँ पे हम देख सकते है कि एक दीवार है। और दीवार पे काफी सारे पिक्चर्स प्रोडक्ट कि बनी हुई है। और उसमें कुछ इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। और हम देख प रहे है यहाँ पे ग्लास एक सीसा सा लगा हुआ है।

देखिए यहाँ पे हमें अ नौ रैक्स देखने को मिल रहे है नौ बोक्सेस जैसे देखने को मिल रहे है जोकि पूरे व्हाइट कलर के है और उसके अंदर कुछ पैकेट्स रखे हुए है जैसे अ बनियान या फिर अन्डर वियर्स टाइप को कुछ के अंदर पैकेट्स के अंदर रखे हुए हैं।

बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते है कि पीछे कि तरफ काफी हरे-भरे से पेड़-पौधे से नज़र आ रहे है जो कि पौधे है उनकी टहलियाँ-टहनियाँ और उनके हरे-हरे पत्ते भी हमें देखने को मिल रहे है नीचे कि तरफ जो हरी घास उग रही है वो भी हम देख सक पा रहे है।

देख सकते है की यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का एक गार्डन जैसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसमे काफी सारी हरी-हरे घाँसे उग रही है।

यहाँ पे हमे अं-- येल्लो कलर के फूल दिखने को मिल रहे हैं जिनकी की हमे एक एक पंख पक्तियाँ सी नज़र आ रही हैं हमे एक एक पल्प नज़र आ रही है।